इस फोटो में किसी बेडरूम का दृश्य दिखाया गया है।

दुकान पर अलग अलग तरह के फूल रखे हुए हैं।

कमरे की छत पर पंखे भी लगे हुए हैं।

इस फोटो में सामने की तरफ एक पहाड़ी दिखाई गई है।

कुछ लोग पार्क में घूमते हुए दिख रहे हैं।

कॉरिडोर को रंग बिरंगे गुब्बारों व फूलों से सजाया गया है।

सामने की तरफ एक आग बुझाने वाला यंत्र भी है।

दाई तरफ एक बास्केटबॉल कोर्ट भी दिख रहा है।

तालाब के इस छोर पर कूड़ा करकट पड़ा हुआ है।

रिसेप्शन काउंटर पर एक महिला बैठी हुई है।

बोर्ड पर महिला हेल्प डेस्क लिखा है।

जमीन पर योगा मैट भी पड़ी हुई--

इस फोटो में किसी मॉल का दृश्य दिखाया गया है।

मॉल को रंग बिरंगी झूमरों व लाइटों से सजाया गया है।

गमलो में कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं।

स्टोर की फर्श पर टाइलें लगी हुई हैं।

डबल रोटिबा बंद रखी हुई है।

अलमारीयों में अलग अलग तरह के चॉकलेट रखे हैं।

दक्षिणम साडीज लिखा हुआ है।

लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं।

सामने की तरफ एक कुर्सी भी पड़ी है।

यह मेट्रो स्टेशन का प्लेटफार्म है।